और वहाँ पे सामान रखा हुआ है और वहाँ पे ऊपर पंखा लगा हुआ है सामने मिरर लगे हुए है और ऊपर लाइट भी लगी हुई है।

और यहां पे सामने और बहुत सारी खिड़कियां है साइड में एक पेड़ भी है जिसमें ग्रीन कलर में पत्तियां है और ऊपर के बादल दिख रहे हैं।

और यहाँं पे साइड में बहुत सारी दुकाने भी है और यहाँं पे शटर भी है और यहाँं पे कुछ व्यक्ति भी दिख रहे है।

पेड़ स्काई कलर जैसे भी दिखाई दे रहे हैं।

फोटो जरा दर डोर दिख रहे है जिनमे ग्रीन कलर में पते है और सामने एक बड़ा सा पोस्टर चिपका हुआ है जिसमे लाइब्रेरी लिखा हुआ है।

और यहां पे सामने रोड बना हुआ है यहां से कुछ बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है यहां पे कुछ दुकानें भी है और यहां से पेड़ भी दिख रहे है और यहां पे सामने खंभे लगे हुए सामने बॉटल दिख रही --

घर में भी कलर पेंट है वो वॉल पर ऑरेंज कलर पेंट है और वहां पर एक पोस्टर चिपका हुआ और वहां पे पटना लगी हुई है और सामने एक रखी हुई है साइड में लगे हुए हैं।

यहाँ पर सामने बहुत बड़ा गेट बने हुए है और वहाँ पर कुछ व्यक्तिभी देख रहा हैं।